पानी का झरना यहां बह रहा है और चारों ओर जंगल है।

पूरा खुला खुला सा बड़ा सा तालाब है जिसमें यह झरना बह रहा है।

यह एक शॉप का दिखाई दे रहा है यहां प --

यहां झिल्स के किनारे का दृश्य दिखाई दे रहा है बहोत ही बड़ी और विशाल झील है पेड़ पौधे भी सराउंडिंग में लगे हुए है।

यहाँ साइड में दीवाल है जिसे हम खड़े होकर झील का दृश्य देख सकते --

ऊपर पानी और साथ में आसमान भी दिखाई दे रहा है चारों ओर दूर दूर तक आबादी दूर दिखाई दे रही है बहोत सुंदर दृश्य है।

ये एक बुक स्टॉल या बुक शॉप है।

पीछे लाल कलर की कुर्सी रखी हुई है किताबें बहोत अच्छे से अपने अपने रेक में अरेंज की हुई रखी हैं।

साथ ही काफी पुरानी बिल्डिंग है और ऊपर आसमान नीला बादलों से छाया हुआ आसमान दिखाई दे रहा है।

एक शादी का दृश्य है। वर-वधु दिखाई दे रहे हैं साथ में।

पर बैठा हुवा मछलियों को सजा करके रखा हुवा है बेचने के लिए। पानी की बाल्टी भीं रखीं हुई हैं।

मोटे मोटे घरेलू आइटम यहां पर दिखा रखे मीटर भी लगा हुआ है लोहे का शटर है इसके ऊपर।

यह एक ऐन आर ब्यूटी वर्ल्ड ड्रीम इंस्टीट्यूट हैं।

जिसमें ब्लैक कलर से ब्लैक कलर पर व्हाइट कलर से ये फॉन्ट से लिखा हुआ है।

किसी का आउटर भी नजर आ रहा है आधा गेट नजर आ रहा है।

खुला खुला सा ये मैदान पेड़ भी दूर दूर तक दिखाई दे रहे है ऐसा लग रहा है की कही ओपन स्पेस मे ये बनाया गया है काफी खुला मैदान--

कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन भी इसी प्रकार से डल रहा है।

यहां पर पानी भरा हुआ है साथ में ग्राउंड में हरी घास भी दिखाई दे रही है।

एक औरत है जो कि ग्रीन जैकेट पहने हुए है।

यह एक पहाड़ी रास्ता है एक तरफ तालाब बड़ा सा बताया हुआ है दूसरी तरफ ऊंचा रास्ता है।

जंगल दी जैसा कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है।

रोड पर सफेद कलर के पट्टे दोनों साइड लगा रखे हैं।

ये एक फुटपाथ का दृश्य बताया है काफी लोग रोड के किनारे खड़े हो करके कुछ देख रहे हैं।

ये समुद्र के किनारे का दृश्य है काफी लोग यहां पर इकट्ठे हो रखे हैं।

पास में ही स्टॉल लगा हुआ है जहां पर छोटे मोटे स्नैक्स भी हम देख सकते हैं कुछ बाइक खड़ी हुई हैं।